एक आदमी खड़ा हुआ है और कुछ सीढ़ी भी दिख रहीं हैं कुछ चिड़ियाघर जैसा कुछ नज़र आ रहा है।

इसमे तीन ऊपर गेट लगे हुए है।